लेफ्ट साइड पे एक ग्राउंड है और राइट साइड पे ब्राउन --

और अलग-अलग ब्रिक्स भी लगी हुई है डिजाइन वाली।

ये बहोत ही अच्छे रेस्टोरेंट का फोटो है जहाँ पे दो वाइट कलर के सोफे लगे है बीच में एक टेबल है।